क्लास चल रही है यहां पर एक टीचर --

एक ने नीली शर्ट पेहनी हुई है।

खिड़की भी दिख रही है और सीढ़ियां चढ़ते हुए नजर आ रही है यहां पर सीढ़ियां बनी हुई है।

और एक लैंप यहां नज़र आ रहा है और जिम की मशीनें पीली और काले--

और मेज के ऊपर पानी का जग टिशु गिलास--

और यहां से जाते हुए कई लोग नजर आ रहे हैं।

यहां हम देख सकते हैं कि यह एक--

जिसमें चांदी का सामान रखा हुआ दिख रहा है।

टेबल पर एक कंप्यूटर भी पडा हुआ है और चेयर भी है।

यहां हम देख सकते है कि यहां--

और कुछ की रिंग और सेल वगैरा भी दिख रहे--

यहां पर हमें डेली यूज का सामान भी नजर आ रहा है और यहां पर--

और साइड में एक आदमी बैठे हुए दिख रहा है और--